वहाँ कुछ पेड़-पोधे भी मौजूद हैं तथा दीवार पर कूलर लगा हुआ है।

पार्क में काफी पेड़-पौधे हैं तथा पीछे की तरफ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे अन्य भी कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है।

नाशपाती संतरे अत्यादि रखे नजर आ रहे है।

यह तस्वीर एक रोड की है रोड पर काफी चेहेल-पेहेल नजर आ रही है वह रोड पर पानी भरा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वहां कीचड़ नजर आ रहा है।

इसमें इसके आस-पास कई लोग भी मौजूद हैं तथा कई बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी हैं लोगों को डेयरी के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है।

इस विद्यालय का नाम उसके पोस्टर पर लिखा हुआ है और नाम है राष्ट्र भारती पब्लिक स्कुल ।

काफी दूरी-दूरी पर कुछ पेड़-पौधे मौजूद हैं तथा आगे की तरफ रिहासी इलाका नज़र आ रहा है खाली मैदान में कहीं-कहीं पर जानवर भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा मौसम काफी सुहाना नजर आ रहा है बगीचे मे लम्बे व छोटे पौधे मौजूद है जो की दूर-दूर तक दिखाई दे रहे है। व नीचे की तरफ घास भी मौजूद है।

इनमें से दो वाहनों के ऊपर पुलिस का सायरन भी लगा हुआ है तथा कुछ पुलिस वाले भी मोजूद हैं।